यह एक मुजफ्फरनगर रोड है।

रोड के बीच में एक स्लिम टाइप की रेलिंग लगी हुई है।

एक ट्यूबलाइट भी दिख रही है।

पन्नी मे मटर भी रखी है जो दिख रही है।

स्पीच के पैकेट दिख रहे हैं।

बिस्किट भी दिख रहे हैं।

एक होल्डर भी दिख रहा है।

पीछे बहोत सारी लीची लगी हुई है।

पीछे एक लाइट भी दिख रही है वाइट कलर की।

एक गमला दिख रहा है।

एक ब्लैक कलर की मेज भी दिख रही है।

पीछे के गेट भी दिख रहे हैं।

जिसमे मुझे कुछ किताबें भी रखी हुई दिख रही हैं।

और दो खिडीयां भी दिख रही है।

इस कंपनी में मुझे बहुत सारे पंखे दिख रहे हैं।

दीवार पर एक बोतल भी रखी हुई है।

जिसमें मुझे सूर्य ढलता हुआ दिख रहा है।

शादी में मुझे बहुत सा आदमी दिख रहे हैं।

पर्दे भी लगे हुए हैं।

थमला भी खड़ा हुआ है।

अनेक अनेक प्रकार के इसमें पेड़ लगे हुए हैं घने जंगल --

यह एक वी_पी_एक्स अकैडमी है।

और साइड में दीवार पर भी टाइल लग रही है।

इसमें मुझे दो सोफे दिख रहे हैं और सिंक दिख रहे हैं।

नीचे टाइल लगी हुई दिख रही है।

घना जंगल है जिसमें मुझे पहाड़ों पे से पानी आता हुआ दिख रहा है।

पास में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग और घर भी है।

यह एक सरकारी काम है जिसमें मुझे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिख रहा है।

नर्सरी है जिसमें मुझे अलग अलग रंग के पौधे दिख रहे हैं।

बहुत ही बड़ा कार्यालय है।

और सामने कुछ खंबे भी दिख रहे हैं।

पीछे टॉवर भी दिख रहे हैं।

वाटर पार्क में मुझे बोहोत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

पानी भी दिख रहा है।

लवे की रेलिंग भी दिख रही है।

अलमारी दिख रही है और शीशे की विंडो भी दिख रही है।

बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे हैं।

प्रत्येक डिजाइन से भी बांध रखी है।

पीछे दो एरो भी रखे हुए हैं खेत वाहने--

इस पेड़ पौधा भी दिख रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर अच्छा बेड है।

और कुछ पंखे भी दिख रहे हैं।

और एक बोर्ड दिख रहा है जिसमें ब्लैक कलर का चार्ज भी लगा हुआ है।

और लाइटें भी जल रही हैं।

नीचे बहुत सी मेज धरी हुई है।

मेज पर एक बिसलेरी की बॉटल दिख रही है और पानी का गिलास भी है।

बहोत बड़ी मेज है जिस पर मोबाइल रखा हुआ है।

आदमी दिख रहे हैं जो कि अपना वर्क कर रहे हैं।

कुछ रेलिंग दिख रही है और बाईकें भी दिख रही है।

और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जिस प्रोग्राम में मुझे बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे है और औरत दिख रही है।

रंग बिरंगी कलर की और पेड़ पौधे के गमले भी दिख रहे हैं।

और नीचे कुछ व्यक्ति नहा रहे हैं।

इन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखी हैं।

आंवला भी दिख रहा है एक बैग भी दिख रहा है।